उसके पीछे एक स्कूल है जो कि पीले कलर का है।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

तीन बैठने वाला का जगह बनाया गया है एक रेलिंग बनाई गई है।

यह एक मंदिर है इसके ऊपर बहुत सारे गुंबज बनाए गए हैं।

एक तार है जो कि रेड कलर का है।

उसके ऊपर बहुत सारे झंडे लगाए गए हैं।

यह एक पिक्चर का एक मछली है जो गोल्डन कलर की बनाई गई है।

यहां पर मछली बेचने का दुकान है यहां पर बहुत सारे मछली बेचे गए हैं।

एक आदमी बैठा हुआ है।

इसमें ब्लैक कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर का पजामा पहना हुआ है उसके साइड में--

येलो कलर का कार्टून में मछलीया रखी हुई है।

उसके साइड में बहोत से कुर्सी या टेबल लगे हुए हैंजिसके ऊपर--

बहुत सारी लाइटें जल रही है।

थाली रखा गया है इस पर कुछ सामान रखे हुए है।

साइड में बहुत से फूल को मोड़ के रखा गया है।

गेट के आगे बहुत सी मिट्टी गिराई गई है।

ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ है यहाँ पे एक बाइक भी है।

उसके साइड में एक बाल्टी है जिसका कलर ग्रीन है उसके नीचे गिट्टी रखा गया है।

यहां पे पेड़ पौधे भी हैं।

यहां पे हमें एक पत्थर दिखाई दे रहा है इसके साइड में पानी है।

इस लिखा गया है छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नगर पंचायत सोनपुर।

यहाँ पे हमे ओ एक हॉस्पिटल दिखाई दिया जा रहा है।

इसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जोकि ब्लू कलर का है।

यह एक पॉण्ड है जिसमें काई जमी हुई है।

यह एक स्कूल का दृश्य है इसके सामने एक ।

दो खिड़कियां है एक दरवाजे है।

इसमें एक बल्ब लगाया गया है एक फोन पे स्कैनर भी चिपकाया गया हैं एक आदमी भी हैं।

उसने ब्लू कलर का कपड़ा पहना है।

यह मे एक गार्डन दिखाई जा रहा है जिसके ऊपर बहुत से फूल उगे हुए हैं।